यहाँ कुछ गाड़ियाँ रखी हुई है एक इंसान खड़ा हुआ है।

यहाँ काम चल रहा है कुछ सीमेंट और मिठी रखी हुई है। सामने कुछ पेड़ लगे हुए है।